उसके बाजू में एक नाव खड़ी हुई दिख रही है।

सामने एक बोतल रखी हुई दिख रही है।

चार-पांच बंदे खड़े हुए दिख रहे हैं।

खड़ी हुई दिख रही है और उसके बाजू में एक ब्राउन कलर की कैबिन दिख रही है।

पक्की सड़क जैसा दिख रहा है।

मुझे ये एक शूटिंग करता हुआ--

मुझे यहां चर्च दिख रहे हैं।

मुझे यहां एक नीला आसमान बादलों से भरा हुआ दिख रहा है।

मुझे ये एक डीजे की गाड़ी दिख रही है।

पानी में नहाते हुए एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और तीन बंदे इस तरफ बैठे हुए कुछ योगा जैसा करते हुए दिख रहे हैं।

मुझे यहां ये एक पब्लिक गार्डन जैसा--

और कमरे में एक बेड दिख रही है।

ईसान की तस्वीर दिख रही है।

और काफी बंदे अंदर प्रे करते हुए दिख रहे हैं और बाहर लौंग में--

कुछ लेडीज योगा करती हुई दिख रही है।

और सामने एक बड़ा सा मिनर लगा हुआ दिख रहा है।

और उसके अंदर कुछ कच्चा काम करते हुए सब कच्चा काम चलता हुआ दिख रहा है एक कोए जैसा गोल--

मुझे ये एक इंडियन पेट्रोल पंप दिख रहा है।

मुझे यहां कुछ पूजा करते हुए बंदे दिख रहे हैं।

मुझे यहां एक चेयर पर बैठा हुआ एक लड़का दिख रहा है और उसके सामने भी एक चेयर खड़ी है जो खाली दिख रही है।

मुझे यहां एक पार्किंग दिख रही है।

और इस तरफ एक चेयर पे दो लड़कियां बैठी हुई दिख रही है और एक बंदा इस तरफ चेयर पे बैठा हुआ दिख रहा है।

और उसका ब्लैक कलर का सामने गेट भी दिख रहा है।

जहां पे कोई गाड़ी नहीं आई आ रही है।

और उसके बाजू में दो बंदे खड़े हुए बातें करते हुए दिख रहा है।

दिख रहा है जैसे कि होटल का--

मुझे ये एक बड़ी सी नदी दिख रही है।

चट्टान जैसा दिख रहा है जहां पे कुछ बंदे बैठे हुए दिख रहे हैं।

मुझे ये होटल का हॉल दिख रहा है।

मुझे ये एक चर्च जैसा दिख रहा है।